तीन लड़के कॉफ़ी और सोडा पीने के लिए आए हुए हैं।

और दुकान के साइड में एक बोर्ड पे मानसून ऑफर करके लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक रेलवे स्टेशन का चित्र दिखाया गया है।

इस घर की एंट्री भी बहोत प्यारी लग रही है।

इस चित्र में हमें एक पुस्तक की दुकान दिख रही है और यहां बुक का नाम है।